चित्र में कुछ बच्चे साइंस के प्रेक्टिकल करते नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ी सी पान छे मंजिली बिल्डिंग नजर आ रही है।

सामने महिलाओं के एक काले रंग की टीशर्ट पहने ट्रेनर महिलाओं को ट्रेन करती हुई नजर आ रही है।

सामने काले रंग की सीढ़ियां दिख रही हैं।

ए_टी_एम के बाहर बहुत सारी एक्टिवा और कुछ बाइक्स खड़ी है।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

दूसरी तरफ काले रंग की सीढ़ियां और एक डस्टबिन रखा हुआ नजर आ रहा हैं।

और कुछ सीढियां नजर आ रही हैं।

बैंगनी रंग के फूलों से की गई है और दुसरे केक की--

दूसरी तरफ भैंस को घास डाला हुआ है।

तबेले की दीवार नई सीमेंट से बनी नजर आ रही है।

नीचे में लाल मिट्टी नजर आ रही है।

सामने दो व्यक्ति एक डस्टबिन और एक पिलर के पास खड़े नजर आ रहे हैं।

जिस पर एक लंबा सा टेबल और काले रंग के सोफे लगे हैं।

पिलर के चारों तरफ बहोत सारे गमले और पौधे लगाए गए हैं।

कुछ सब्जियां जैसे की आलू प्याज--